यहाँ एक पत्थरो से ऊपर से पानी गिर रहा है ।

दुकाने है यहाँ बहुत सारे सामाने खरीद रहे हैं ।

यह एक गार्डन है जिसमें व्यायाम साला ओपन जिम लिखा है यहाँ आके लोग योगा कर सकते हैं ।

यह एक बहोत सुंदर हर गार्डन जैसा स्थान है जहाँ थोड़ा ऊपर ही ऊपरी भाग बहोत ही ऊपर में बहोत सारे लोग खड़े है।